बैंक मे बोहउत अंधेरा हो रहा है बैंक मे एक लाइट भी लगा हुआ है बैंक के बाहर बोहउत सारी गरिया भी खरी है।

यहा एक बस है जो बोहोत ही अच्छी है ।

और कुछ लोग बस का इंतज़ार भी कर रहे है।

आस पास मे बोहउत सारे घर भी है और कुछ लोग भी खारे है।